यह दृश्य एक मछली बाजार का--

सामने की ओर दो लोग भी नज़र आ रहे हैं।

सामने की दीवार को हरे रंग से रंग गया है।

यह दृश्य एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान का है जिसमें सामने की ओर कपड़े धोने की मशीन एवं --

और ऊपर की जमीन को भी सफेद रंग से रंगा--

सामने की और कुर्सियां और मेज भी नजर आ रही है।

दीवारे लाल और गुलाबी रंग से रंगी गई हैं नीचे की जमीन को लाल रंग के कालीन से बिछाया गया है।

ऊपर के हिस्सों में कई सारी लाइटे लगी लाइटे लगी हुई हैं और चार लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं।

और कुछ मिट्टी गिरी हुई की नजर आ रही है।

और पिंजड़े भी लगे हुए हैं पिंजड़े के उस पार कई सारे पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं।

सामने की और की दीवार को टाइल्स से बनाया गया है और--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

यह चित्र किसी घर का है जिसमें सामने की ओर ऑरेंज और स्किन कलर के रंग से दीवार को रंगा गया है।

नीचे की ओर घास उगी हुई हैं।

सामने की ओर एक पौधे का गुच्छा भी नजर आ रहा है।

यह केक एक चांदी के रंगे हुए कूड में रखा हुआ नजर आ रहा है।

पानी के आसपास काले और भूरे रंग के पत्थर नजर आ रहे हैं।

दीवार में कई तरह के पोस्टर भी लगे हुए नजर आ रहे हैं।